इसके पीछे एक ट्रक खड़ा है ट्रक के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है।

जो सफेद रंग का है स्कूल का नाम है एन_जी_एम पब्लिक स्कूल ।

यह एक खेत का चित्र है जहां एक आदमी अमरुद लिया हुआ है।

जो जिसके बाहर कुर्सियां रखी हुई है इसके अंदर बहुत सारे--

यहां एक बाइक वाला जा रहा है उसके पीछे एक कार है।

यह एक विवाह भवन का चित्र है जो काफी बड़ा है।

बाहर एक बच्चा देख रहा है जिसने लाल रंग के जर्सी पहनी है।

इसके अच्छो अगल बगल में छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं।

बहुत सुंदर है नीचे पूरा टाइल्स बिछा हुआ है जो बहुत सुंदर लग रहा है यहां कुछ आदमी बैठे हैं।